इस दृश्य में एक व्यक्ति है जो पत्थर पर बैठा हुआ है और फोटो खिंचवाया है।

अंदर में भवन सफेद रंग का है और घास के मैदान हैं।

यह दृश्य किसी बाजार का है।

यहां लोग सामान खरीदने आए हुए हैं बहुत भीड़ है।

स्टेशन जैसा प्रतीत हो रहा है नीचे कीचड़ है।

सभी सामान हम देख पा रहे हैं।

नीचे का फर्स बहुत साफ सुथरा है।

सामने रोड है उस रोड पर स्कूटी से एक व्यक्ति जा रहा है ।

सामने एक चेयर है दीवार पर घड़ी टंगा हुआ है।

सीलिंग पर बहोत सुंदर डिजाइन बने हुए है उन पर लाइटे लगी हुई हैं।

पार्क में बहुत सारे झूला है फिसलने वाला झूला और गोल-गोल घूमने वाला झूला है।

रोड के एक तरफ दीवार है।

इस दृश्य में बहोत सारे साइकिल नजर आ रहे हैं सभी साइकिल नए है।

बहुत सारे फल भी रखे हुए हैं।

नीचे का फर्श भूरे रंग का है दीवार पर एक घड़ी टंगा हुआ है।

यह दृश्य एक कार गराज का है यहां बहोत सारे कारे लगी हुई है।

एक कार ऊपर की ओर टंगा हुआ है और दो मैकेनिक उसे देख रहे हैं।

के बगल में घास उगा हुआ है सूरज चमक रहा है।

बगल में बहुत सारे पेड़ है पेड़ हरे भरे और घने है दूर दूर तक पेड़ ही नजर आ रहे हैं।

रूट दो भागों में बांटा हुआ है।

बहुत सारे पेड़ हैं सारे पेड़ बहुत घने और हरे भरे हैं।

कार का रंग लाल है टेंपो हरे रंग का है।

और हॉर्लिक्स कंप्लेंन और चाँकोज रखे हुए हैं।